जैसा कि देख पा रही हूँ यह एक कमरा है कमरे का जो फर्श है वो वुडेन का बना हुआ है कमरे।

यहां पर एक गणेश जी का फोटो नजर आ रहा है और साथ में ही राम लक्ष्मण सीता जी का भी फोटो नजर आ रहा है।

जैसा कि देख पा रही है यह एक कमरा है कमरे की फर्श पर टाइल्स लगी हुई है कमरे में एक ब्राउन कलर का सोफा रखा हुआ है कमरे में दो स्टूल भी है ।

दुकान भी है जो फ्रूट की दुकान है जहां पर वाटरमेलन बनाना फ्रूट है और भी कई सारे फ्रूट रखे हुए हैं।

गेट जो है वो कांच का है जिसके साइडों को मैरून कलर से पेंट किया गया है गेट के दोनों तरफ ब्लैक कलर की दीवार भी बनाई गई है।

साइड में एक ग्रे कलर की ऑयल कैन भी नजर आ रही है गैराज के साइड में एक लकड़ी का टेबल भी नजर आ रहा है जिसके ऊपर काफी सामान रखा हुआ है।

लोहे की चैन से बांधकर कुछ छोटी-छोटी कुर्सियां बनाई गई हैं कोई येलो कलर की है कोई ब्लू कलर की है कोई ग्रीन कलर की है।

साइड में इमोजी स्टिकर भी नजर आ रहे हैं फैबिकॉल की बॉटल्स भी नजर आ रही हैं एक प्लास्टिक के अंदर रबर्स भी रखी हुई हैं।

यहां ब्लैक कलर के पेट से लिखा हुआ है पार्क के एक साइड में लाल कलर का टेबल बना हुआ है जो कि बैठने के लिए है इस समय आसमान साफ दिख रहा है समय दिन का है।

कांच भी लगा हुआ है। कुछ कपड़े हेंगर में टंगे हुए हैं तो कुछ कपड़े टेबल पर रखे हुए हैं एक आदमी नजर आ रहा है जिसने ब्लू जींस पहना है शर्ट पहना है और शूज पहना हुआ है।

में एक तरफ येलो ऑटो भी नजर आ रहा है एक अंकल बाइक से जाते हुए नजर आ रहे हैं एक लड़का है जो बाइक पे खड़े होकर एक लड़की से बात कर रहा है।

जैसा कि देख पा रही हूं यहां एक झरना है झरने का पानी बहुत साफ है झरने के आसपास बहुत सारी चट्टानें है और कुछ छोटे-छोटे पत्थर भी हैं झरना के आस।

एक चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ है रेस्टोरेंट के एक साइड में कुछ खाने की चीजों की फोटो लगी हुई है और एक भगवान की फोटो लगी हुई है जिस पर माला लगी हुई है।

लगा हुआ है दुकान के पास में एक वाइट कलर का चैनल गेट भी है दुकान के पास एक साइकिल का परछाई भी नजर आ रहा है।

और सामने की ओर टेबल रखा है जिस पर रेड कलर का स्प्रे रखा है एक और आदमी नजर आ रहा है जिसने ब्लैक कलर का।

साइड में भी एक टेबल है जिसमें एक आदमी और एक औरत बैठा है और उसके सामने का आदमी उन्हें ज्वेलरी दिखा रहा है।